रही बात ऐसे बनाने की तो ऐसे कारीगर भी अभी नहीं मिलते होंगे क्युकि यह बहुत ही --

उम्म चपाकल है शायद उसका थोड़ा सा फोटो आया है और दो गाड़िया भी खड़ी है।

बोटनी क्या बनाया गया है बोटनी सॉरी बोटनी है इसी का दृश्य यहां पर दिखाई दे रहा है।

हीरो के कंपनी का है और यहाँ पे जितने भी बाइक आपको चाहिए यहाँ पे बाइक अच्छे और --

और एक पाइप भी जिससे पानी पटाया जाता होगा अरे बाप रे इधर भी फुल है बहुत देखने मे बहुत ही अमेजिंग यहाँ पर --

पार हो गया है ये इतना और इधर भी छोटे-छोटे पेड़-पौधे भी लगा चुके है फूल के लिए